इस पिक्चर में एक रोड दिखाई दे रहा है। रोड पर कुछ गाड़ियां चलती हुई दिख रही है।

इस पिक्चर में एक जंगल बना हुआ है और बीच में एक रास्ता गया है।

लगे हुए हैं सामने की तरफ कुछ छोटे--

ये एक घूमने का पार्क बना हुआ है बीच में चलने का रास्ता भी दिया है।

कपड़े रखे हुए हैं सामने दीवार पर--

एक आदमी खड़े होकर कुछ फोटो खींचता हुआ दिखाई दे रहा है।

और फोर व्हीलर कार और दो गाड़ियां भी खड़ी हुई हैं।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

एक शिमला रिसोड नाम से भी बना हुआ है।

और कुछ छोटी एक्सरसाइज की मशीनें भी बनी हुई है।

यह एक रेस्टोरेंट है जो कि काफी सुंदर नजर आ रहा है।

और बाहर की तरफ काफी सारे फूलों वाले--

कपड़े टंगे हुए हैं जैसे कि जैकेट्स टी-शर्ट शर्ट्स वगैरह।

यह एक लकड़ी का काफी बड़ा काउंटर जैसा बना हुआ है और सामने दीवार पर भी--

कुछ गाड़ियां खड़ी हैं और कुछ गाड़ियां बाहर की तरफ दिखाई दे रही हैं।

काफी सारे पेड़-पौधे लगे हुए हैं और कुछ बड़े-बड़े--

एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

रु मैदान में किनारो पर जाली लगी हुई है और बीच में--

जिसके अंदर कुछ अखबार वगैरह रखा हुआ है।

रात का समे हो रहा है और--

कुछ व्यक्ति बाहर भी बैठे हुए हैं।